दरी बिछा हुआ है एक बच्चा लेटा हुआ है जिसका फेस पर ब्लर है और पेर --

ब्राउन कलर का पंखा है ब्राउन कलर का एल_इ_डी जल रहा है वाइट कलर का मैट्रेस है।

साइकल है तीन बाइक्स है पचास साइड साइकिल है।

कोल्डड्रिंकस है टॉफी है अ जूस मिल रहा है।

यहाँ पर तालाब है हरा-हरा रंग का खेत है एक पीला रंग का घर है यहाँ दीवार है वाइट कलर का।

एक झंडा है बांस में लगा हुआ और इस पानी में एक बोट है और बोट ब्लू कलर की है।

आदिव का मंडप है इसमें वाइट पिंक येलो रेड कार्पेट है।

और फूल का कलर पीला गुलाबी हरा है वाइट है और इसमें बहुत सारा पाँच छ बलून लगा हुआ है दूल्हा दुल्हन बैठने का सीट है।

और पंखा तीन चार लगा हुआ है तीन चार बल्ब है गेट है दो ब्लैक कलर का।

समोसा का दुकान है दुकान का नाम न्यू राम सेवक स्वीट्स एंड चार्ट शर्मा मार्केट पटोरी --

अंदर की ओर जा रही हैं दो तीन बच्चे हैं लगता है राशन का दुकान है।

और सब लाइन में खड़े हुए हैं दो तीन लोग फोन चला रहे हैं कुछ लोग जाली के पास खड़े हुए हैं।

बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स लगे हुए हैं और सीमेंट मिक्सिंग मशीन भी है।

और इसके सामने बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं इसके बगल में एक वाइट रेड येलो कलर की बिल्डिंग है।

उसके बगल एक ग्रे रंग का जैकेट पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

खाने की चीज हैं जैसे चिप्स कुरकुरे लेस और--

यहाँ ए एक मंदिर जैसा लग रहा है जिसका रंग वाइट है और इसमें पीले --

इसमें एक लड़की डांस कर रही है जो पीले रंग की साड़ी पेहनी हुई है।

गाड़ी का नंबर डबल्यू_वी थ्री एट ए_ए जीरो जीरो थ्री टू लिखा हुआ है।

और एक लैंप है ये दुकान का कलर पीला और ब्लू रंग का --

जो ब्लू रंग की शर्ट पहने हुए हैं और सभी बच्चे वाइट कल कल कलर के ड्रेस में हैं।

यह एक कुर्सी है जिसमें अ बहुत सारी कुर्सियाँ है और ये एक रूम है वाइट कलर का और --

इसमें एक इमारत है जो वाइट कलर की दिख रही है इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ भी है एक --

है जो पानी छिड़क रहा है इन हरे हरे घासों के ऊपर और इसमें --